ये चित्र पे कनारा बैंक है जिसपे गेट खुली हुइ है।

ऐ_सी खुद लगि हुइ है बाहर कि ओर और आसमन दिख रहा है।

ये चित्र एक थिएटर का है जिसमें लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पर और स्क्रीन लगी हुई है बोहोत बड़ी सी। रेड कलर की कुर्सियाँ हैं।

ये चित्र ए.टी.एम का है। जहाँ पर बहुत सारे धूप आ रही है और पेम्प्लेट्स लगे हुए हैं।

ये चित्र में एक गाड़ी पर एक आदमी है और एक आदमी है बडा सा झाड़ है। पिंक कलर की बिल्डिंग है और की बिल्डिंग है।

यह चित्र स्कूल या कॉलेज या कंपनी ऑफिस का है जिसमें बहुत सारे रूम्स दिख रही हैं झाड़े रखी हुई है आसमान दिख रहा है।